बगल में डब्बा रखा हुआ है पार्क में बाउंड्री किया हुआ है गमला है गमला में पौधा लगाया गया है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है आसमान भी दिख रहा है ।

बिस्कुट कुरकुरे मीट मसाला गरम मसाला राजनिवास लहसुन प्याज बहोत सारा चीजे रखा हुआ है देखने में बहोत अच्छा लग रहा है।